जो कि नीले और काले रंग की कुर्सी में बैठा है उसने गुलाबी रंग के कपड़े को ओढ़ा है एक आदमी उसके बाल काट रहा है और एक आदमी खड़ा हुआ है।

यह एक जगह का चित्र हैं जहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ हैं जो की अपनी फोटो ले रहा हैं।

कुछ अलमारी बनी हुई है जिस में बॉटल रखी हुई है एक बिजली का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है ।